यहां पे कई प्रकार के दुकान दिखाई दे रहे हैं।

इस होटल को कई प्रकार से अच्छे से सजाया गया है।

इस दुकान पे कई भीड़ लगे हुए हैं जो दिख रहा है।

यह बहुत ही बढ़िया सा स्टेशन दिखाई दे रहा है।